ये एक कार्यक्रम का सीन है जिसमें वाइट ड्रेस और उपर टोपी पहने हुए बहुत सारे लोग एक स्टेज पे खड़े हैं शायद कुछ बोल रहे हैं या फिर गा रहें हैं। एक तबला बजा रहा है। वहाँ पे साइड में एक बुजुर्ग माला पहने के खड़े --